यह चित चितकबरी रंग की गाय है जोकि पालतू गाय है तथा इसे --

ये किसी घाट का फोटो है तथा यहां पर सामने पुलिया भी दिखाई दे रहे है यहां पे पंडित व पुजारी तथा अन्य लोग पूजा कर रहे हैं छठ जैसे माहौल लग रहा है और यहां पे भीड़ काफी कम लग रही--

एक पेंटिंग लगी हुई है जहाँ पे ई -लर्निंग पोर्टल ओन एग्रिकलचर एजुकेशन मतलब खेती -बाड़ी की बारे में कुछ दिया गया है ।

यहाँ पर बिल्डिंग दिखाई दे रे है एक गेट भी दिखाई दे रहा खिड़कियाँ भी दिखाई दे रहे तथा कपड़े- उपड़े सुखाया गया है लोगों के द्वारा ताकि वो सुख सके तथा इनका अपना उपयोग किया जा सके तथा पेहना जा सके --

ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जोकि भारत का एक मुख्य बैंक हैं।

अपने मनोरंजन के लिए अक्सर दोस्तों के साथ या पारिवारिक रूप से ऐसे फ़िल्म देखने जाया जाता हैं।

विद्यार्थी अपना पढ़ाई पूरा करने करने जाते है ताकि वो भविष्य जो भविष्य को उज्ज्वल कर सकें --